चारों तरफ पार्क के लोहे की जाली लगी हुई है अंदर काफी सारी गाड़ियां भी पार्क हैं और इंसान भी है बच्चा झूला झूल रहा है झूले में दो खंभे लगे हुए हैं।

सड़क की फोटो है जिसके सामने बहुत सारी शॉप है।

दो टेबल्स सामने दिख रहे हैं और छोटे-छोटे हिस्से में दो कुर्सियां भी दिख रही है जिनका कलर येलो कलर का--

यह एक पहाड़ और पार्क दोनों को मिक्स करके फोटो है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं नीचे हरी हरी घास जमी हुई है।

इसका कलर ब्लू कलर का है ऊपर जो पट्टी है वो वाइट कलर की है।

इनमें से कुछ मछलियां बड़ी-बड़ी हैं कुछ मछलियां छोटी-छोटी है।

और कुछ मछलियाँ झींगुर डिजाइन की हैं सामने से एक औरत देख रही है।

दीवार के ऊपर का कलर जो छत का कलर है उसका कलर वाइट कलर --

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो है जिसमें एक पर्सन रेस्टोरेंट में बैठ कर--

सामने काफी सारे लोग है जिनमें से एक लड़का फोन चला रहा है एक इंसान खड़ा हुआ है एक पुलिस वाला भी है इंट्रेसोसाइस ए_टी_म का है बगल में एक इंसान खड़ा है।

टेबल के चारों तरफ दीवाले हैं और दीवालों पर डिजााइंस बने हुए--

तो उस पर जीना लगा हुआ है पत्थर का पूरा का पू--

वो जो घर की दीवार है वो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है जीने के ऊपर चढ़ने के बाद।

में बहुत सारी मशीनें रखी हुई है ऊपर दो फैन लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के है।

आर के घर के छोटे से बाहर आंगन में काफी सारे गमले रखे हुए हैं और दो बड़े बड़े पेड़ लगे--

उसका चेक अप कर रहा है सामने एक्यूमेंट रखे हुए--

जो मंदिर के सामने से निकलती है और अगल-बगल--

जिसके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और सामने एक और शायद छोटा सा केंद्र--

जो फैक्ट्री है उसके सबसे ऊपर छत पर लाइट लगी हुई है।

जो इसका कलर है वो हल्का आसमानी है ये खुले आसमान के नीचे बहोत सारे ट्रक रखे हुए है इन ट्रक्स का कलर व्हाइट एंड ब्लैक है।

और ये मूर्तियां तांबे की है इसलिए ये मूर्तियां इतनी सुंदर लगी हुई है।

जिसमें मूर्तियों के सामने और अगल-बगल में दो गिलास एक डिजाइनदार स्टैचू और दो प्लेट्स रखी हुई है एक कद्दू बना हुआ है जो चांदी का है।

इसमें छोटे-छोटे कुछ प्लांट लगे हुए हैं आई थिंक ये ऐसा होता है मैंने देखा है जब ये मधुमक्खी के छत्ते होते हैं जो--

बंजर जमीन अगल-बगल हरे-हरे पौधे सामने खेत है।

इनमें शायद सरसों के पौधे लगे हुए हैं बिकॉज येलो फूल है और खुला आसमान है।

यह एक बुक स्टॉल है जिस पर काफी सारी बुक्स रखी हुई है।

और इन बुक्स पर गणपति जी की फोटो एंड लक्ष्मी माता की फोटो बनी हुई है इत्यादि भगवान--

यह फैक्ट्री है इसमें लोहे की बहुत सारी चीजें बनती हैं।

यहां पे काफी सारी धूप आ रही है और कोई वर्कर दिखाई नही दे रहा यहा पे--